नमस्कार दोस्तों लिस्ट्स के साथ शुरूआत पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट्स नामक पाइथन डेटा स्ट्रक्चर से परिचित होंगे
इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्न करने में समर्थ होंगे लिस्ट्स बनाने में लिस्ट एलीमेंट्स को एक्सेस करने में लिस्ट्स में एलीमेंट्स जोड़ने में लिस्ट्स से एलीमेंट्स डिलीट करने में अतः अभी लिस्ट एक मिश्रित डेटा एलीमेंट है इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स समाविष्ट हो सकते हैं
लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जहाँ सभी एलीमेंट्स एक विशिष्ट क्रम में क्रमबद्ध होते हैं
आई पाइथन इन्टरप्रेटर शुरू करें और सबसे पहले बिना किसी एलीमेंट्स के एक खाली लिस्ट बनाएँ
कमांड में इपिथॉन टाइप करें
फिर टाइप करें एम्पटी इस इक्वल टो स्क्वेयर ब्रैकेट्स
फिर टाइप करें empty एम्प्टी बंद कोष्ठकों में होना चाहिए
यह बिना किसी एलीमेंट्स के एक खाली लिस्ट है
टाइप करें नोन एम्पटी इस इक्वल टो विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट्स और सिंगल क्वोट्स में स्पैम कॉमा विथिन सिंगल क्वोट्स ईजीजीज कॉमा 100 कॉमा 1234 के रूप में एक अरिक्त लिस्ट को परिभाषित करते हैं
अर्थात् एक लिस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है दो वर्गाकार कोष्ठकों में कॉमा से विभाजित वैल्यूज़या आइटम्स के क्रम को टाइप करना
जैसा कि हम देख सकते हैं लिस्ट्स भिन्न प्रकार के डेटा सम्मिलित कर सकता है
पिछले उदाहरण में स्पैम और ईजीजीज स्ट्रिंग्स हैं जहाँ 100 और 1234 पूर्णांक और दशमलव क्रमशः हैं
अतः हम भिन्न डेटा टाइप्स के एलीमेंट्स को लिस्ट्स में खुद लिस्ट्स को सम्मिलित करते हुए रख सकते हैं
यह विशेषता लिस्ट्स को विविध डेटा स्ट्रक्चर्स बनाती हैं
लिस्ट के अंदर एक लिस्ट सम्मिलित करते हैं
हम लिस्ट के एक एलीमेंट को उसके अनुरूपी इंडेक्स का इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं
अतः कमांड में टाइप करें नोन एम्पटी फिर टाइप करें लिस्टिनलिस्ट इस इक्वल टो स्क्वेयर ब्रैकेट्स 4234and 1 2 3 4
अतः अब हम अनुरूपी इंडेक्स का इस्तेमाल करके एक लिस्ट के एक एलीमेंट को एक्सेस कर सकते हैं
लिस्ट के पहले एलीमेंट का इंडेक्स 0 है
अतः अरिक्त लिस्ट के लिए nonempty0 पहला एलीमेंट nonempty1 दूसरा एलीमेंट और इसी प्रकार से तथा nonempty3 अंतिम एलीमेंट देता है
अतः कमांड टाइप करें नोन एम्पटी विथिन 0 फिर से nonempty1 फिर nonempty3 यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें
क्या होता है जब आप nonempty 1 करते हैं
आप टर्मिनल पर जा सकते हैं और टाइप करें वर्गाकार कोष्ठकों में नॉनेम्पटी 1 जैसा कि आप देख सकते हैं आपको अंतिम एलीमेंट का डेटा प्राप्त होता है जो है 1234
पाइथन में नेगेटिव इन्डिसेस का उपयोग एलीमेंट्स को अंत से प्राप्त करने के लिए करते हैं
अतः 1 अंतिम एलीमेंट देता है जोकि 4थ एलीमेंट है 2 अंत से दूसरा एलीमेंट देता है और 4 अंत से चौथा एलीमेंट देता है इस उदहारण में पहला एलीमेंट है
अतः टाइप करें नॉनेम्पटी 1 nonempty 2 फिर नॉनेम्पटी 4 हम लिस्ट के अंत में अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके एलीमेंट्स भी जोड़ सकते हैं
अतः टाइप करें नॉनेम्पटी डॉट अपेंड कोष्ठक और सिंगल कोट्स के अंदर ओनेमोर
हम एक एरर देख सकते हैं

फिर टाइप करें nonempty160 फिर टाइप करें नॉनेम्पटी डॉट अपेंड कोष्ठक के अंदर 6 तो पुनः नॉनेम्पटी
कृपया यहाँ विडियो रोकें अभ्यास करें और फिर जारी रखें
लिस्ट लिस्टिनलिस्ट में एलीमेंट एंड को पाने का क्या सिन्टैक्स होगा
नेगेटिव इन्डिसेस का इस्तेमाल करके आप एंड कैसे पाएँगे
अतः उत्तर आपके स्क्रीन पर है जैसा कि हम देख सकते हैं कि नॉनेम्पटी के आगे ओनेमोर और अंत में 6 जुड़ गया है
चलिए आगे बढ़ते हैं
लिस्ट में एलीमेंट्स की संख्याओं का पता करने के लिए हम लेन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं
लिस्ट नॉनेम्पटी की लम्बाई पता करते हैं
अतः टाइप करें लेन विथिन ब्रैकेट्स नॉनेम्पटी वैसे ही जैसे लिस्ट में हम एलीमेंट्स जोड़ सकते हैं हम उन्हें हटा भी सकते हैं
यह करने के दो तरीके हैं
एक इंडेक्स का इस्तेमाल करके
हम कोशिश करते हैं टाइप करें delnonempty1 अतः टाइप करें del विथिन ब्रैकेट्स नॉनेम्पटी और स्क्वेयर ब्रैकेट्स 1
फंक्शन del इंडेक्स 1 के एलीमेंट को डिलीट करता है जोकि लिस्ट में दूसरा एलीमेंट है ईजीजीज
एलीमेंट हटाने का अन्य तरीका है कंटेंट के ज़रिए
मानते हैं कि हम नॉनेम्पटी लिस्ट से 100 डिलीट करना चाहते हैं
इसके लिए आप फंक्शन रिमूव इस्तेमाल कर सकते हैं
अतः टाइप करें nonemptyरिमूव किन्तु क्या यदि यहाँ दो 100एस होते
यह जाँचने के लिए गएक छोटा सा प्रयोग करते हैं
अब कमांड में नॉनेम्पटी डॉट अपेंड विथिन ब्रैकेट्स इन सिंगल क्वोट्स स्पैम
फिर टाइप करें नॉनेम्पटी
फिर टाइप करें नॉनेम्पटी डॉट रिमूव विथिन ब्रैकेट्स इन सिंगल क्वोट्स स्पैम फिर आउटपुट के लिए टाइप करें नॉनेम्पटी यदि हम अब जाँचें हम देखेंगे कि पहले वाला स्पैम हट गया है और इसलिए फंक्शन रिमूव क्रम में पहले वाले एलीमेंट को हटाता है और अन्य को अप्रभावित छोड़ता है
यह आप ध्यान रखें कि del इंडेक्स नम्बर के द्वारा हटाता है removeकंटेंट को पास करने के आधार पर हटाता है
चलिए एक उदाहरण लेते हैं
टाइप करें del हमें 123 देता है
अतः टर्मिनल पर पर टाइप करें क इस इक्वल टो 12 13 और फिर टाइप करें del विथिन ब्रैकेट्स एंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स क थेन स्क्वेयर ब्रैकेट्स 2
रिमूव हमें 213 देगा
चूँकि यह x2 से मिलने वाले के पहले पड़ाव को डिलीट करता है जोकि 1 है
अतः टाइप करें क डॉट रिमूव और कोष्ठकों में एक्स फिर स्क्वेयर ब्रैकेट्स 2
जैसा कि हमने एक एरर देखी हमने एक्स ओएफ 2 को क ओएफ 2 में बदल दी
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और फिर से चलायें
1लिस्ट लिस्टिनलिस्ट से तीसरा एलीमेंट हटायें
2लिस्ट लिस्टिनलिस्ट से एंड हटायें
हल आपके स्क्रीन पर है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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा लिस्ट्स बनाना इंडेक्स नम्बर्स का इस्तेमाल करके लिस्ट्स को एक्सेस करना फंक्शन अपेंड का इस्तेमाल करके लिस्ट में एलीमेंट जोड़ना
del फंक्शन में हटाये जाने वाले एलीमेंट का इंडेक्स नम्बर निर्दिष्ट करके लिस्ट्स से एलीमेंट हटाना
फिर रिमूव फंक्शन इस्तेमाल करके कंटेंट के जरिये लिस्ट से एलीमेंट डिलीट करना और अंत में लेन फंक्शन का इस्तेमाल करके लिस्ट की लम्बाई पता करना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
1आप कैसे एक खली लिस्ट बनाएँगे
2क्या आप लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकते हैं
3कैसे आप लिस्ट की बिना लम्बाई ज्ञात करे उसके अंत को एक्सेस करेंगे
और उत्तर है 1हम emptyempty वर्गाकार कोष्ठकों के अंदर केवल खाली जगह छोडकर एक खाली लिस्ट बनाते हैं
2हाँ
लिस्ट लिस्ट सहित सभी अन्य डेटा टाइप्स को सम्मिलित कर सकता है
यहाँ एक उदाहरण है list in list23246stringall डेटाटाइप्स कैन बीई there 3
नेगटिव इन्डिसेस का इस्तेमाल करके हम नेगेटिव इन्डिसेस का इस्तेमाल करके लिस्ट को अंत से एक्सेस कर सकते हैं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
धन्यवाद